यह एक गार्डन जैसे कुछ दिखाई दे रहा है और मस्त अच्छे से पेड़- पौधे भी दिख रहे है कुछ गुलाबी रंग में है पेड़ और कुछ हरा में हैं ।

यहाँ पे एक औरत चल रही जैसे दिख रही है और कुछ झुके हुए है उसके बगल में बहुत बड़ा दरवाज़ा है और एक पेड़ है जिसमें पत्तियाँ नहीं है कटा हुआ जैसे प्रतीत हो रहा हैं ।